उसकी बाईं ओर एक ब्लैक कलर का दो पहिया वाहन रखा हुआ है।

कोचिंग सेंटर के छत पर एक पंखा लगा हुआ है।

ई-रिक्शा के पीछे एक स्टेपनी लगी हुई है।

और बोहोत सारे मछलियां काट के रखी गई है।

यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गेट लाइब्रेरी का दृश्य है।

दाई ओर हमे एक ईट की बनी हुई एक प्रवेश द्वार नजर आ रहा है।

इसके बगल में एक ग्रे कलर का पर्दा है।

ग्राउंड पर एक व्यक्ति नीले रंग का ट्रैकसूट पेहना हुआ --

बोर्ड के दाईं ओर गेट फिट डोंट क्विट का कोट लगा हुआ है।

गैरेज के अंदर हमें एक लाल रंग की स्कूटी --